बहोत बड़ा रोड खाली दिखाई दे रहा है।

और पड़दे भी लगे हुए हैं।

पै पे मांस लगा हुआ है यह छोटा सा हॉस्पिटल लग रहा है।

और ए_सी भी लगा हुआ है लाइटे भी हुई है बहुत सुंदर घर है।

इसमें आदमियों ने गप्पे का भरे भरे समान--

यहां बाहर दो लड़के मोटरसाइकल लेके खड़े है और एक कुत्ता खड़ा है वहां।

यह बहोत बड़ा ग्राउंड खाली है।

बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं उधर दो चार मोटरसाइकल भी जा रही है और--

यहां बहुत सुंदर सुंदर फ्रिज मिल रहे हैं।

गलीचे भी बिछे हुए हैं और हरियाली सी भी दिखाई दे रही है।